इ बढ़िया भी दिखाई दे रही नमकीन दिखाई दे रहे हैं इसमें नए नमकिंस लड्डू आदि दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में जिम का कुछ सामान दिखाई दे रहा है तथा एक आदमी भी दिखाई दे रहा है इसके आगे के साइड में कुछ शटर भी दिखाई दे रही है यह--

कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और कुछ गाड़िया भी कड़ी हुवी दिखाई दे रहे है इस गेट के पास एक रंगोली--

जिसमे की बहुत सारे बिस्किट्स दिखाई दे रहे है बर्बन हिडेन सिख फिफ्टी-फिफ्टी --

यह फोटो किसी जिम का है जिसमें जिम करने के काफी सारे समान नजर आ रहे हैं इसमें कुछ दीवाले दिखाई दे रही है।

तथा आगे की साइट में उजाला भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक ट्रैक्टर और एक ट्राली दिखाई दे रही है ट्रैक्टर में कोई मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है जिसके द्वारा जिसके द्वारा कुछ मेडे टाइप का बनाया जा रहा है।

यह फोटो किसी जिम का है जिसमें का जिम का बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है तथा इसमें बैलून्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी पार्क की है जिसमें की भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है तथा इसके बीचों-बीच में भारत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये बहुत ही खूबसूरत एवं सजा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें आगे की साइड खजूर के पेड़ तथा कुछ अलग पेड़-पौधे भी दिखाई दे --

जोकि लंबा का लंबा दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक खजूर का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी पार्क है जिसमें की कुछ अशोक के पेड़ खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तथा आगे की साइड एक मंदिर जैसा भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी फार्मेसी की है जिसमें एक बड़ा-सा गेट कांच का दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कुछ गाड़ियां कार और टू व्हीलर रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिसका नाम चंदा लहरी ई लिखा हुआ है और कुछ स्टूल भी दिखाई दे रहें हैं।